कुर्सी लगाया हुआ है दीवाल का कलर सफेद है।

यह एक दुकान है यहां पे गाड़ी सर्विसिंग होता है।

दीवाल का कलर सफेद है।

एक खिड़की दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम का दृश्य है।

बहोत सारे अलग अलग बैलून टांगा हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

और दुकान पे अलग अलग सामग्री रखा हुआ है।

एक टी_वी भी लगाया हुआ है।

ग्रीन कलर का बाल्टी रखा हुआ है और ब्लू कलर बहुत सारे बैलून लगाए हुए हैं दीवार का कलर सफेद है।

पहाड़ दिखाई दे रहा है।

दीवार का कलर सफेद है।

पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं ।

फोटोकॉपी करने वाली मशीन है।

बहोत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

पंखा टंगा हुआ है लाइट जल रहा है।

बहुत सारे अलग अलग लाइट लगाया गया है।

नीले रंग का आकाश है और झाड़ी जमा हुआ है।

यह एक ग्राउंड का दृश्य है।

बहुत सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है।

दीवाल का कलर सफेद नीला और लाल है और गार्डन है।

बहोत सारे खिड़की दिखाई दे रहे हैं।

नीले रंग का आकाश है।

यह एक रूम का दृश्य है।